यहाँ पर एक जिम है जिस पर कुछ लोग कसरत कर रहे हैं वहाँ पर वो कसरत करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट समान रखे हैं।

यहां एक ए.टी.एम. मशीन है जिसके अंदर लाइट जल रही है। ए.सी. लगा हुआ है।